इसमें मुझे दो बेड दिखाई दे रहे हैं।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

इसमें कुछ बच्चे खड़े हुए हैं।

और ऊपर गमले लगे हुए हैं हरे हरे।

माल के बाहर गार्डन बना हुआ है।

जिसमें एक औरत अं नीले कलर का टॉप पहने बुक्स को देख रही है।

यह एक तस्वीर फाटक के है।

यह एक जनेश्वर पार्क का फोटो है।